पानी के दूसरा साइड में पहार भी है और रस्ता भी दिखाई पा रहे --

ये तस्वीर में एक नदी बड़ा सा दिखाई दे रही है उसके सामने पत्थर पत्थर भी है।

यह एक गार्डन दिखाई दे रही है उसमें फूल खिला हुआ है रोज पिंक कलर में।

ये पिक्चर में बंबू से बनाया हुआ बाउंड्री दिखाई दे रहे हैं वहां में कुछ साइन बोर्ड में स्टाइल से लिखा हुआ है।

बिस्तर में ब्लू कलर का बिछा गए है ऊपर में एक कपड़ा रखा हुआ है।

साइड ड्रम में पेड़ जंगल भी है।

सामने कुछ बिल्डिंग घर सब दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ भी उसके सामने में है।

दुकान के आगे बहुत सारा बाइक स्कूटी रखा हुआ है उसमें बहुत सारा आदमी भी है सब अपना अपना काम में हैं।

टेबल के ऊपर दो बेग रखा हुआ है।

गाड़ी चलने के सामने कुछ पानी जमा हो गया है।

ए पिक्चर में एक रूम को सजाया हुआ दिखाई डे रही है।

सब अपना अपना जगह में अपना अपना बॉक्स लोक में रखा हुआ है सामान खाने का ची --

यहां एक हॉल का तरह दिखाई दे रहा है टीना से बनाया हुआ--

ये पिक्चर में एक हाल की तरह एक घर दिखाई दे रही है टीना से लगाया हुआ ब्लू कलर रंग में।